इस इमेज में हमें एक घर दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और वहाँ पे हमें सीढ़ी भी लगी हुई दिखाई दे रही है और बहुत --

इस इमेज में हमें रोड दिखाई दे रहा है| रोड पर एक कार दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है और एक स्कूटी स्क्टूर दिखाई दे रहा है| और --

हम्म और हमें यहां तीन-चार मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है और ये ब्यूटी पार्लर में में ऊपर टिन सेट दिखाएं दे रहा है टिन ग्रीन कलर की है उसके ऊपर हमें बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं बिजली के।

नावों पर भी बहुत सारा समान रखा हुआ हैं नावे रस्सी से बंधी हुई हैं एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं ।

उसके साइड में हमे बहुत सारे पेड़े लगे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

इस इमेज में हमें सामने एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें रेड कलर का जिसमें उ लिखा हुआ है राज जेंट्स पार्लर ।

यहाँ में एक गुफा में एक जं-एक-एक-उन-जंगला दिख रहा है जहाँ से गुफा में अंदर लाइट आ रही है।

जिसमें हमें आठ दस बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ येलो कलर के हैं कुछ ऑरेंज कलर के हैं और हमें यहां बहुत सारे मोटर साइकल भी रखी हुई दिखाई दे रही है एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है बेगूसराय से दिल्ली।

में दोनों साइड जंगल सा पत्थर सा दिख रहें हैं पहाड़ दोनों साइड और उनमें ब पेड़ें भी दिखाई दे रहें हैं ग्रीन कलर के।

एक टावर दिखाइ दे रहा है बहुत सारे पेड़ें दिखाई दे रहें हैं आसमान दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें बहुत सारे पेन टंगे पेन दिख रहे हैं टंगे हुए ये शॉप है।

यहाँ रोड भी दिकाई दे रहा है रोड पे दो तीन मोटर और दो साइकिल दिक रही है एक साइकिल लेकर आदमी आ रहा है एक बहुत बड़ा पेड़ भी दिकाई दे रहा --

इस पिक मे हमे एक रोड दिखाई दे रहा है दो तीन शटर दिखाई दे रहे है एक शटर व्हाइट कलर की है एक शटर रेड कलर की है।

पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं और ऊपर उम हमें एक उम बस जाते हुए दिखाई दे रही है येल्लो कलर ।

और हमें एक दुकान भी लगी हुई दिखाई दे रही है जिसपे कुछ चिप्स पा चिप्स मिप्स की पैकेटे टंगी हुई है दो कंटेनर रखे हुए है और एक दो आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।